यहाँ पर कुछ फोटो फ्रेम्स लगे हुए हैं आप लोग देख सकते हैं ऊपर रेड एंड येल्लो कलर की लाइट लगी हुई है और देख सकते हे ब्लैक कलर की चेयर्स लगी हुई है यहाँ पर लाइट ब्राउन कलर की टेबल --

स्कूल देख सकते है स्कूल के सामने जो दिवाल है उसमे कलाकारी की गई है आप लोग देख सकते है एक बच्चा इसमे पेड़ लगाते हुए दिख रहा है इसमे कुछ बच्चे साफ़-सफाई करते हुए दिख रहे है। यहाँ--

ग्रीन कलर के यहा पर आपको आसमान दिख् रहा होगा नीला कलर और कुछ बादल दिख् रहे होंगे साथ मे नदी का कलर आप देख सकते है नीला कलर है